यह एक सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया है। यहां पर लोग प्रतिदिन आते है पैसे उठाने के लिए और पैसे जमा करने के लिए। यहां पर बहुत सारे संख्या में डेली की भीड़ रहती है क्योंकि यह बैंक में सभी के खाते खुले होते है।

यह एक पार्क है यहाँ पर बोहत सारी चीजें है और यहाँ कि हरियाली बहुत खुबसुरत है और यहाँ पर झुले लगे हुए हैं और यहाँ पर बच्चे प्रतिदिन झूला झूलने अथवा खेलने आते हैं।

यह एक शोरूम टाइप का है जैसे यहाँ सुजुकी या बाइक पुराने बाइक नये बाइक लिए जाते है। और यहाँ पुराने बाइक को सर्विस किया जाता है और नये बाइक को भी यहाँ से लिया जाता है।

यह एक मस्जिद है यहां पे तिनो टाइम नमाज़ पढ़े जाते है और यह सिर्फ मुस्लिम लोग जाते है क्युकि यह मुस्लिम धर्म क मस्जिद है इसलिए यहां पे मुस्लिम हि नमाज़ पढ़ सकते है।

अन्दर जाने के लिए टिकट लगते हैं। और टिकट का चार्ज दस रुपए हैं। और यहां पे ज्यादा से ज्यादा दो घंटे बिता सकते हैं।